और कई सारे इलेक्ट्रिक वायर्स भी दिख रहा है।

जमीन भी दिख रहा है।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

आसपास कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

आस पास कहीं सारे बनाना के गाछ भी दिखाई दे रहा है।

आस पास कई सारे कुर्सियां भी दिखाई दे रहा--

सामने में एक कार्टन भी दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है सामने में दो फूल के गमले भी दिखाई दे रहा है।

और उसमें एक आदमी का फोटो भी दिखाई दे रहा है।

और तो अलमीरा भी दिख रहा है सामने में एक टी_वी दिख रहा है।

दुकान के ऊपर एक बोर्ड भी दिख रहा है जिसमें श्री श्याम स्वीट्स लिखा लिखकर दिख रहा है।